एक इधर कांच का अलमारी दिखाई दे रहा है बहोत ही सुंदर जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक कुछ केक पड़े हुए दिखाई दे रहे है।

तस्वीर में एक सामने बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है उसके बाहर ग उम्म बाइक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है बहुत ही एक गाड़ी दिखाई दे रही है एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

देखने मे मेरे तीस तस्वीर मे एक फिसलपट्टी दिखाई गयी है इस पट्टी के सीढ़ियां लगायी हुई है एक तस्वीर फिसलपट्टी दिखाई गयी है पीछे ज़मर सा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

उजे एक बच्चा बोलता हुआ दिखाई दे रहा--

बहुत ही प्यारा सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है।

सामने मुझे एक बहोत ही अच्छी सुन्दर तस्वीर देखने को मिल रही है तस्वीर मे जो दृश्य दिखाया गया है वो दृश्य बहोत ही सुंदर और अच्छा दिखने को लग रहा है।

सामने मुझे एक बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य दिखाया गया है दृश्य बहुत ही अच्छा और सुंदर देखने को मिल रहा दृश्य में जो तस्वीर दिखाई गई है।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

सामने मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाया गया बहुत अच्छा सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है।

सुन्दर दृश्य देखने को नसीब हो रहा बोहोत प्यारा हो रहा है अच्छा दृश्य दिखाया गया है बोहोत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है।

बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को लग रहा बहुत ही प्यारा और अच्छा दृश्य दिखाया गया है एक दुकान का दृश्य दिखाए गया है।

एक लड़की डांस करती हुई नृत्य करती हुई नजर आ रही है।

तस्वीर बहोत ही अच्छी और सुंदर देखने को मिल रही है तस्वीर के ऊ एक बोर्ड लगा हुआ है उसपे लिखा हुआ है लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान लगती है कोई।

सामने मुझे एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा दृश्य दिखाई दे रहा है दृश्य बहुत ही अच्छा और सुंदर देखने को मिल रहा है।

सामने मुझे बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने में मिल रहा है दृश्य बहुत ही अच्छा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है।

एक आदमी टेबल पर बैठा हुआ आधा दिखाई दे रहा है बहोत ही खूबसूरत दृश्य देखने को नसीब हो रहा बहोत प्यारा दृश्य दिखाया गया।

तस्वीर में बहुत ही अच्छा सुंदर सा दृश्य दिखाया गया है ये दृश्य में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिस पे बहुत भीड़ नजर आ रही है।

सामने मुझे बहुत ही अच्छी सुंदर सी तस्वीर दिखाई दे रही है।